एक बाहर दो तीन जेंट्स अंदर बैठे हैं दो तीन लेडिसे बैठी हैं कुछ जेवर टंगे हुए हैं।

ये एक सैमसंग शॉप है जहां पर कि काफी सारे मोबाइल्स और टी_वी से र लगे हुए हैं यहां तीन चार कॉर्नर बने हुए हैं।